और दूर एक चेयर पड़ी है उसका कलर क्रीम है एक व्यक्ति फैला--

बैनर का कलर लाल मशीन कलर हरा है और सामने रेलिंग है उसका कलर का --

आसमान का कलर नीला है फर्श का कलर भूरा है सामने व्यक्ति का कपड़े का कलर लाल और काला है।

घर का कलर अह लाल बिल्डिंग का कलर पीला और लाल फर्श का कलर स्लेटी --

सूरज का कलर पिला और लाल है आसमान का कलर लाल और नीला --

व्यक्ति के कपड़ो का कलर को पीला सफेद और दूसरे व्यक्ति कपड़ो कलर --

और दो वो एक कलर भूरा है पौधों का कलर हरा है।

सामने पंखे हैं उनका कलर स्लेटी है दीवार का कलर हल्का स्लेटी है।

वहां में एक बॉक्स पड़े हैं उनका कलर सफेद है दीवार कलर स्लेटी है।

हंस का कलर सफेद है और माला का कलर पीला और लाल --